बाज़ार लगे हुए हैं बहुत अच्छे बाज़ार लगे हुए है सब मछली बिक रही है ।

हरे -भरे पेड़ -पोधे है उसके बगल में एक रूम बना हुआ है जो रूम ग्रे और स्काई और वाइट कलर के बने है ।

बड़े-बड़े पेड़-पोधे है इसके इसके आगे --

यहाँ पे एक नदी है जिसमें एक आदमी बैठे हुए हैं।

अ बहुत सारे घड़ी सब लगे हुए हैं ये दुकान एल्वेस्टर डाला हुआ है।

झूला में बहुत सारे आदमी दिख रहें हैं।

यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे झूले सब लगे हुयें हैं।